तस्बीर देख रहे है ये तस्बीर एक मैरिज हॉल का तस्बीर है जी हाँ --

और यहां पर के इसकी बराबर में जो एक डिजाइन है ये जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है और इस बिल्डिंग का जो कलर है वो लाल और सफेद है इसकी खिड़कियां और नीचे का कलर सफेद है जिसमें कि हम देख रहे हैं।

तस्वीर देख रहे हैं यह तस्वीर किसी किसी पार्लर किसी बकरी पार्लर की तस्वीर है जहां पर के बकरियां पलती हैं और ये यहां पर खाना खा रही हैं।